गाड़ी का कलर रेड एंड ब्लैक है गाड़ी के पीछे चार लेडीज आपस में बात करते हुए नजर आ रही है।

नीचे दो कुर्सियां लगी हुई दिख रही है और दो डी_जे बॉक्स में दिख रहे हैं।

उसके बगल में एक और बाइक है उसका कलर ब्लू है और एक कार भी नजर आ रही है।

एक ढाबे के अंदर का फोटो है यहां बहोत सारे कुर्सी टेबल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

उसी टेबुल का कलर ब्लैक है और एक आदमी भी नजर आ रहा है।

मां काली का मूर्ति नजर आ रहा है।

यह फोटो एक कोचिंग सेंटर का है।

तीन सोफा दिख रहा है दो चेयर दिख रहा है।

यह फोटो एच_डी_एफ_सी बैंक का है जिसके बाहर बहुत सारे लोग दिख रहे है कुछ लोग फोन से बाते कर रहे हैं।

दो आदमी खाना बना रहे हैं और एक आदमी यहां हैंड वॉश करते हुए नजर आ रहा है।

ये टोल टैक्स का फोटो है जहां लिखा हुआ है रांची टाटा सेक्शन ऑफ एन_एच थर्टी थ्री ।

दिवालो का कलर पीला है दीवालो को पेंसिल का पेंटिंग बना हुआ है।

यह फोटो डॉक्टर का चैक अप रूम दिख रहा है।

एक टेबल भी दिख रहा है और एक टी_वी भी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक टावर भी दिख रहा है और बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

बेडशीट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर बने हुए नजर आ रहे हैं और दो तकिये नजर आ रहे हैं दो कंबल नजर आ रहे हैं रूम में एक कुर्सी भी नजर आ रही है।

उसके बगल में भी दो पेड़ नजर आ रहे हैं उनका कलर ग्रीन है।

रैक पे बहुत सारी दवाईयाँ रखी हुई दिख रही है।

रिक्शा के आगे एक लड़का साइकल चला रहा है उसके सामने बंधन बैंक है।

यह एक फर्नीचर दुकान कि फोटो है जहां दो लोग खड़े हैं।

नीचे कुछ आदमी सीढ़ी पे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बाहर कुछ कुर्सियां लगी हुई नजर आ रही है।

एक टेबल पे बहुत सारे चॉकलेट भी नजर आ रहे हैं।

उसके बगल में एक टेबल लेपटॉप दिख रहा है।

ये फोटो डैम का है जहां पे नदी में दो नाव लगी हुई दिख रही है।

एक आदमी बल्टी लेके नीचे बैठा हुआ दिख रहा है।

ये एक इवेंट का फोटो है इसमें क्रेन में रस्सी बांध कर पेड़ को लटकाया गया नजर आ रहा है।

और कुछ लोग आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं पेड़ भी नजर आ रहे हैं और चबूतरा भी दिख रहा है।